जिसमें रोड़ी क्रेशर आदी बनाए जाते हैं उस स्थान पर बजरी का एक--

यह दृश्य अंबुजा सीमेंट का है विनोद सेल कॉरपोरेशन काठ मंडी चरखी दादरी--